ये एक भवन दिख रहा है जिसकी रेड सीडिया है रेड कलर के दिबार ओरेंज कलर के दिबार वाट कलर की दिबार दिख रही है जिसमें गेंदे का फूल से डेकोरेशन किया है बिल्डिंग के जस्ट सामने ।

बॉउंड्री दिख रही है पानी कि छोटी तलाब दिख रहा है आई साइड छोटे बड़े मकान दिख रहे है एक दो थो चबूतरे दिख रहे है एक इन्सान दिख रहा है जिसने ब्लैक कलर --

अ-साइड मे एक बॉउन्डरी भी दिख रही है।

उसके साइड में एक रेड कलर का मंदिर दिख रहा है जिसके कालमे दिख रही है नीचे साइक को गुलाल डाला हुआ दिख रहा है।

रोड दिख रही है एक महिला व्हाइट कलर की स्कूटी में बैठी हुई है एक जेंट्स जा रहा है शॉपकीपर की डस्टबिन दिख रही है बहुत सारे ट्व वीलर वाहन में खड़ी हुए पार्किंग में खड़ी --

स्विमिंग पुल दिख रहा है स्विमिंग पूल में कुछ लोग नहा रहे हैं बैग देख रहा है स्प्राइट की बोतल दिख रही है गिलास दिख रहे हैं।